यह बिल्डिंग काफी बड़ा है।

यहाँ पर बरांडा काफी बड़ा है।

यहाँ पर काफी आदमी भी रहते होंगे।

इस होटल का नाम रोबिन होटल है।

यह लड़का बोतल से पानी पी रहा है।

इस दीवार को पेंट किया गया है।

यहाँ पर एक गैस - चुल्हा है।

यहाँ पर सभी मास्क पहने हुए हैं।

जिसे हम लोग जुम्मा कहते हैं।

यहाँ पर एक अग्निशामक भी है ।